और चित्र के अंदर रखे हुए शूज दिख र--

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान दिख रहा है और उसका कलर --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

और एक लड़का व्हाइट कलर का कुर्ता पहने दिख रहा है।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

और कुछ लोग तगाड़ी सर पर रखे दिख रहे हैं।